इस पिक्चर में हम एक टेबल देख रहे है टेबल काली कलर की दिखाई दे रही है टेबल के पीछे साईड एक अलमारी बनी हुई है अलमारी में --

निर्माणाधीन भवन दिख रहा हैं भवन दो तल्ले का दिख रहा हैं भवन के मेन डोर पे एक बालकनी दिख रही हैं।

पवन के फ्रंट मे सीढी दिख रही है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

किनारे किनारे साइड कुछ बैनर लगा हुआ है जिसमे कुछ लिखा हुआ है कुछ गाड़िया भी खड़ी हु --

ऑफिस के मेन काउंटर में एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है किनारे एक प्रिंटर भी रखा हुआ है।

साइड में एक किनारे एक दिवार को दिवार घडी --

आगे की रो में चार बच्चे बैठे हैं पीछे की रो में तीन बच्चे बैठे हैं उसके पीछे की रो में पांच बच्चे दिख रहे हैं।

पीले कलर के आईटीएम में कुछ पेपर लगा हुआ हैं।

ये पीछे एक पी पीले कलर की हाइड्रा मशीन खड़ी हुई है।

इस पिक्चर में हमे दुकान को देख रहे हैं दुकान में अलमारियाँ लगी हुई हैं अलमारियों के फर्स्ट खाचे में--

जमीन में मिट्टी भी दिख रही है मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र मे हम एक घर के बाहर की सीढ़ियों को देख रहे है।

आदमी के किनारे एक सफ़ेद कागज भी रखा हुआ हैं।

पिक्चर में हम एक दुकान देख रहे हैं दुकान में चार रूम में बैड लगे हुए हैं पहले रूम में--

रामे कलर का शर्ट पहने हुए एक लड़का खड़ा हुआ हैं।

पास में भी बहोत हरी घासे कुछ मिट्टी दिख रही हैं एक कुत्ता भी दिख रहा है।

चारो साइट हल्की हल्की रोशनी आ रही है लड़के के द्वारा मोबाइल में सेल्फी लोते हुए--

कांउटर भी रखा हुआ हे काउंटर सफ़ेद कलर का हैं।

लड़की मोबाइल में बात कर रही है उसके बगल में खाली चेयर रखी हुई है चेयर खाली है।

दूसरा टुकनी भी दिख रही है एक केरट पीले कलर का दिख रहा है।

इस पिक्चर में हम एक वाटर पार्क को डेक रहे है वाटर पार्क के बिच में स्विमिंग पूल बना है।

कुछ और दिख रहा हे लाल झंडा भी दिख रहा हैं।

ईके एक ट्रांसपरेन्ट पैकेट मे एक चार्जर भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर मे हम एक फोर व्हीलर की फर्स्ट सीट को देख रहे हैं ड्राइविंग सीट को देख रहे हैं।